जिसमें की दो तरह के अंगूर है और केले और नारंगी और अनार भी है।

एक बड़ी जंगल दिखाई दे रही है।

जोकि मंदिर के बाहर एक औरत खड़ी है और मंदिर के पीछे बहुत बड़ी मकान है।

इस तस्वीर में मुझे मिठाई की शॉप दिखाई दे रही है।

पीछे फ्रिज है और छत में लाइट भी है और फैन भी है।

इस वाला आदमी केक काट रहा है।

बहुत सारे सब्जियां दिखाई दे रही है।

जो कि टमाटर मिर्च भिंडी--

और पार्क के बीच में एक आदमी--

झरना बह रही है और झरने के नीचे एक बहुत बड़ी पत्थर पे आदमी खड़ा है।

फोटो मे मुझे रोड दिखाई दे रही है।

बहोत दूर से मंदिर दिखाई दे रही है।

कान के बाहर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है।